यह बहुत सारे कार्टून है रेनकोट है।

बहुत लाजवाब है बहुत बड़ा है और साफ सुथरा भी है ।

और साइकिल को आस - पास मोटरसाइकिल भी है।